स्कूल ह। का देखने में पेंट भइल बा।

छत बा। लिन्टर लागत बा। देखले अच्छा लागता।

घर है पंखाटाँगल बा पेंट बा पर्दा बा। बल्ब बरलबा अलमारी बा देख ले मैं अच्छा लगता अच्छा लगता --